एक बहुत बड़ा रोड है रोड के साइड में एक बहुत बड़ा घर है उसमें लिखा है कैंटीन ।

गुलाबी कलर का काउंटर लगा हुआ है उस पर मोबाइल रखा गया है ।

स्कूल के बाहर में चार पाँच बाइक खड़ा हुआ है स्कूल का गेट बहुत बड़ा है।

ये एक मॉल में ऊपर मॉल के ऊपर में लिखा है पहनावा सूती साड़ी।

मंदिर के अंदर में तीन मूर्ति बिठा हुआ है पीला कलर का है हाथ पकड़ा हुआ है।

एक स्टेशन जैसा दिख रहा है। उस स्टेशन में एक आदमी कूड़ादान में फेंक रहा है एक आदमी जा रहे हैं।

फ्रिज है एल_सी_डी है ए_सी है लाइट लगा हुआ है टेबुल लगा हुआ है।

दो आदमी बाहर में खड़ा हुआ है एक आदमी पेपर पकड़ा हुआ है ।

बहुत ही अच्छा लग रहा है मॉल का कलर सादा है।

लाइट लगा हुआ है। सीढ़ी के बीच में फूल लगाया हुआ है। बहुते अच्छा दिख रहा है।

अंधे ने बहुत सारा सामान रखा गया है। कुर्सी कलर है सादा कलर काला कलर --

एक किचन रूम है किचन रूम में दो आदमी सोया है।

एक दुकान है दुकान में एक बच्चा जूता खरीदने आया है।

दुकानदार के मालिक के हाथ में जूता पकड़ा हुआ है।

बहुत सारा जूता रखा गया है शिशा पर हर तरह का जूता है।

एक जंगल में पांच गो आदमी जा रहा है।

लाल कलर का कार खड़ा किया है चारों तरफ छांव किया हैं।

इक घर के सामने बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है आम का बहुत जारा है।

एक बहुत बड़ा पिलर है पिलर के ऊपर में लिखा हुआ हैसदर अस्पताल देवघर।

और उसका फोटो शीशा में आ रहे हैं एक आदमी केश काटने वाला आदमी खड़ा --

एक बहुत बड़ा रूम है उसे रूम में बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं।